एक तस्वीर दिखाई दे रहा है उसमें बहोत सारे लेडिज हैं एक घर दिखाई दे रहा है।

घर का रंग उजला है एक गेट दिखाई दे रहा है उसका रंग बुलु है।

कृष्ण जी का मूर्ति रखा हुआ है कलर का मूर्ति है।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

एक लड़की दिखाई दे रही है उसका रंग--

इसके अंदर बहुत सारे मकान दिखाई दे रहे हैं।

एक आकाश है आकाश का रंग उज्जला--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

आदमी दिखाई दे रहे हैं ऊपर से एक पोस्टर सटा हुआ है पोस्टर में कुछ लिखा है अंदर बहुत सारे--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

एक घर दिखाई दे रहा है घर का रंग काला है ।

अगल बगल के पौधे दिखाई दे रहे हैं ।

एक गाड़ी दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ रखा हुआ है।

अंदर सडर पर कुछ लिखा हुआ है।

उसके अंदर एक कांच दिखाई दे रहा है।

इसके अंदर तस्वीर के अंदर एक घर दिखाई दे रहा है।

एक तस्वीर दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारे पेड़ पसे दिखाई दे रहे हैं।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

घर का रंग उजला है एक आदमी बैठा हुआ है कुर्सी पर।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

एक पोस्टर दिखाई दे रहा है पोस्टर पर कुछ लिखा हुआ है।

बिल्डिंग के ऊपर एक पोस्टर दिखाई दे रहा है पोस्टर पर कुछ लिखा हुआ है।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

ऊपर आकाश है आकाश का रंग गुजला है उसमें सूरज वहा निकला हुए हैं अगल-बगल पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है।

उसके अंदर बहुत सारे अगल-बगल--

एक पोस्टर दिखाई दे रहा है पोस्टर पर कुछ लिखा हुआ है।

घर का रंग उजला है अगल-बगल बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं ।

एक तस्वीर दिखाई दे रहा है।

अगल-बगल बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहा है।

एक तस्वीर दिखाई दे रहे हैं तस्वीर के अंदर बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

घर दिखाई दे रहे हैं एक बस दिखाई दे रहा है।

अगल-बगल बहुत सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहा है।

एक तस्वीर दिखाई दे रहा है।

इसके अंदर बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इसके अंदर बड़े छोटे-मोटे सफा सेट दिखाई दे रहे हैं।

हरे भरे फ्लॉवर दिखाई दे रहे है।

एक तस्वीर दिखाई दे रहा हैं।

एक दुकान दिखाई दे रहे हैं।

तीन चार लाइट लगा हुआ है एक ब्लू कलर --

आदमी दिखाई दे रहे हैं एक घर दिखाई दे रहा है।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

एक तस्वीर दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे घर दिखाई दे रहा है अगल-बगल बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं।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

बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।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

बहुत सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं।